तीन लोग बैठे हैं जो तीन बैठे हैं वो खाना खा रहे हैं और दो काउंटर में खड़े हैं और तीन--

यह एक रेस्टोरेंन हैं जिसमें ग्यारह लड़के हैं और उसमें से ग्यारह लड़कों में एक वॉचमेन हैं जो खाना खा रहा हैं और तीन--

यह एक नर्सरी है जिसमें बहुत सारे पौधे लगे हुए हैं पौधों का कलर अलग अलग है एक साइड के पौधे का कलर --

यह एक ढाबा है जिसका नाम जी पंजाबी ढाबा है।

जिसमें टेबल के ऊपर एक पंखा लगा हुआ है और दीवार में--

यह कपड़ों का सेल सिर्फ बॉयज लोगोंका है और इसमें बहोत सारे बॉयज कपड़े लेने आए हुए हैं।

यह एक रेस्टोरन है जिसमें बहोत सारे टेबल लगी हुए हैं और बहोत सारे झूमर--